एक हरे कलर की है एक लाल कलर की है एक गुलाबी कलर की है।

पीछे एक दरवाजा है जो बहुत छोटा है और वह लकड़ी का दरवाजा है।

एक मैदान है जिसमे चारो तरफ घास है। घास हरी रंग की है।

जो कि लकड़ी की काउन्टर है। पीछे एक मशीन है जिसमें एक उल्टे करके डिब्बा लगा हुआ है। उसके अंदर कुछ है जो कि काले कलर का है।

एक बगीचा है जिसके चारों ओर फूल लगी हुई हैं।

कुछ फूल संतरे रंग के है। उनके चारों कुछ ओर पेड़ हैं जोकि हरे भरे है।

उसके सामने एक कैरेट रखा हुआ है जो कि नीले कलर का है।

नीचे बहुत सारे फूल है जोकि गेंदे के हैं कुछ पीले कलर के हैं कुछ संतरे कलर के हैं।